ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये इसके आगे जो ग्राउन्ड है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हॉस्टल है।

एक सागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है यह गेट पूरा लोहे का बना हुआ है बोहोत सेफ्टी से और बगल में सिक्योरिटी के लिए भी बना है ।

यहाँ पर दो बहुत बड़े टावर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी है एक सड़क है।